जिसमें कुछ हल्का हल्का पानी नजर आ रहा है। यह बहुत सुन्दर गुंबददुमा भवन आकर्षक प्रतीत हो रहा है।

पैरों के बल खड़ा हुआ है। पंखा उड़ने की मुद्रा में दिख रहे हैं साथ में नीचे हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है।

पंछी एक गोल चक्र में जैसे एक साथ खड़े हुए हो।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान के दोनो ओर कुछ अलग बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है। स्टेशनरी की दुकान पर अंधेरा छाया हुआ है।

सरोवर के पीछे हरे-भरे पेड़ दिख रही है और सरोवर के बिलकुल नजदीक सीढ़ियाँ देखाई दे रही हैं ऐसा लगता हैं की सिडियो से जाने का रस्ता किले तक जाता हैं ऐसा लग रहा है।

यह एक बाजार का दृश्य है | बाजार में ऊंची -ऊंची बिल्डिंग साफ दिखाई दे रही हैं कुछ रिक्शे में लोग बैठे हुए अपने गन्तव्य तक जा रहे हैं।